है और एक अ ह कुत्ता नज़र आ रहा है जो काला है।

ये यहां पे बोहोत सारे दुकान नजर आ रहे है और दुकानों पे बोर्ड लगे हुए--

और यहां पे ठीक पेड़ दिख रहा है।

और यहाँ पे और कोकोनट वॉटर बॉटल्स हैं और फंटा की बॉटल यहाँ पे रखी हुई है।

ब्लू कुर्ती पहनी हुई है और सर के बाल काले--

और पीछे एक आदमी बैठा हुआ है उसके सर के बाल काले--

आलू हैं और अ कुछ और है क्रेट --

ये सामने एक बिल्डिंग अ दिख रही है और बाहर इस--

और यहाँ पे ए वो ग्रीन कलर है।

जिम सेंटर में हैं इस लड़के ने ऑरेंज कलर की शर्ट --

वो विक्ट्री साइन दिखा रहा है उसके बाजू में खड़ा --

येलो कलर का है और पीछे पेड़ हैं और पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं।

ये कुछ शॉप्स नज़र आ रही हैं और इनका शटर ऊपर किया गया--

यहाँ दुकान में ये कुर्सियाँ नज़र आ रही हैं टेबल नज़र--

और इसकी नीचे बहुत अच्छी गास--

एक अलमारी है और अलमारी में बहोत सारी चीजें हैं।

ये यहाँ पे शॉप है और यहाँ पे मालाएँ लगी हुई हैं--

काउंटर पे यहाँ एक आ छोटा लड़का है उसने ब्लू कलर --

ये एक अअ एल_सी_डी की दुकान है और यहां पे बोहोत सारी एल_सी_डी --

और ब्लैक कलर की कुर्सी है पीछे कुछ चीजें रखी हुई--

नीचे और यहाँ पे एक पेड़ है--

और टेबल पे ए प्लेट्स हैं और--

यहाँ पे ए कुछ चीजें नज़र आ रही हैं।

औ पेपर के डिब्बे रखे हुए हैं।

यहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं एक ब्लैक कलर का फैन --

और दूसरी लाइट भी लगी हुई है जो कि रिफ्लेक्ट कर रही--

कुछ लोग खड़े हैं और यहाँ पे इनमें एक--

ये यहाँ पे दुकान में शेरवानियाँ आ हैं और ये--

अह उनकी जेब में रेड कलर की शर्ट --

अ एक कलीनिक हैं और यहाँ पे--

और ये एक वुड कलर की बिल्डिंग है।

कुछ पोदे नजर आ रहे हैं और इसके पास ऑरेंज कलर के फ्लावर्स --

ये यहाँ पे वाटरफॉल न हैं और ये पत्थरों पे ये पानी नि आ रहा है।

लांडस हैं पीछे और आसमान पर बादल हैं।

ये यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं होंडा--

ब्लैक कलर की या बनियान पहनी हुई हैं और ब्लैक कलर की पैंट हैं ओ--

ये एक दुकान है और वहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं दोकान में एक ब्लैक कलर की एक --